ये एक जंगल है जंगल में बहुत सारी हिरणे है व्हाइट ब्राउन ब्राउन कलर की उनकी बहुत बड़ी बड़ी सिंघे है एंड यहाँ पर आ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बड़े-बड़े पेड़ है।

यहां पर एक पाइप डला हुआ है बड़े-बड़े पेड़ बने हुए है पानी के अलग-अलग गड्डे बने हुए है पानी के छोटे-छोटे--

ये एक साइड के गेट पे उत्सव लिखा है एक साइड पे रेस्टोरेंट ये जो छोटा सा रेस्टोरेंट है एंड अंदर वाइ पिंक कलर की चेयरें लगी हुई है आस-पास में बड़ी सी एक बिल्डिंग बनी हुई है एक कोई सेंटर बना हुआ है शटर लगी है पर्पल कलर की उसकी।